यह एक दृश पहाड़ों का है।

ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट एंड ऑनलाइन लाइसेंस सेंटर लिखा हुआ है इसमें--

यह एक ग्राउंड का दृश्य है ग्राउंड में बड़े बड़े वृ--

पी रहा है नीचे काफी चिक्कड़--

बीच में राउंड सेप से सारा--

पिंक कलर के कर्टन लगाए हुए हैं सीनरी साम--

केयर व्हाइट स्काई ब्लू सी ग्रीन कलर की चेहर भी पड़ी है।

ऊपर कलरफुल लैंप लगाए गएं--

सब्जी में गोबी धनिया पालक मेथी आदि की सब्जियां लगाई हुई है एक--